ये पानी इनके खेत में लगा हुआ है और अब अपनी ये धान को अपनी खेत में लगा के इधर-उधर अब पूरा खेत फेलाऐंगे बहुत ही जब ये देखने भी अच्छा लग रहा है। जब ये बड़ा होगा तो और ये इसका जो हमलोग चावल बनते है।